इस फोटो में ये कोई एक मंदिर है इस मंदिर के बाहर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

फोटो में यह कोई एक स्कूल है स्कूल के बाहर के बच्चे कुछ रुकती भी खड़े हैं।

यह कोई एक नन्हे बच्चों कि स्कूल है इसमें ये तरह तरह कि टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं।

इन फोटो में यह कोई एक कंपनी है ये कंपनी में --

इसमें ये कुछ पाइप बड़े है कुछ टंकियां बड़ी हुई है और ऊपर ये लाइट जल रही हैं।

और ये नीले कलर की चेयर है इसके पास इसपे ये बैठा हुआ है और ये फर्नीचर लगा हुआ है।